इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है जो कि इंडियन ऑयल का है।

झरने का जो पानी है उसका रंग हल्के बैंगनी रंग का प्रतीत हो रहा है।